एक शॉप दिख रही है। यह शॉप किराना सामान की नजर आ रही है।

यहाँ एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर चित्र है। ऊपर सीलिंग बहुत सुंदर दिख रही है व्हाइट कलर की तथा दरवाजे की चौखट की किनारी --

अ ग्रे कलर का कारपेट बिछाया गया है एवम पीछे चार खिड़कियां नजर आ रहीं हैं।

फोटोज है जिसमें बड़ी ही प्यारी तरीके से रंगोली बनाई गई है एवं ध्वजरोहन हुआ है उसका --

यहाँ एक छोटा सा पानी का कुंड बना है जिसमें कहीं तरह के टर्टल्स खेल रहे हैं।

और इस चर्च में बोहोत सारे पंखे लगे हुए हैं और ट्यूबलाइट भी लगे हुए हैं।

और यहाँ चित्र शोहावनी शाम का चित्र है तथा हरियाली भी आस-पास नजर आ रही है।

घांस लगी हुई है और एक वाइट कलर का खम्बा भी लगा --